एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर--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

मुझे इस फोटो पर फूल दिखाई दे रहे हैं।